मैम्‌ दिख रही है जो माइक मे कुछ बोल रही है उनके आगे ब्लैक कलर का मंच लगा हुआ है उस साइड एक स्टेज लगा है इसपर प्लस के निशान वाले पर एक अंकल लटके हुए हैं।

एक कुछ लगा हुआ है एक दिख रहा है जिस पर एक अंकल लटके हुए है बहुत सुन्दर--

सुंदर सीन लग रहा है वो अंकल कुछ देख रहे है जो पत्थर पर बैठे है उनके पैर पानी मे है पानी बहुत अच्छा दिख रहा है।